साभी बच्चे खेल रहे हैं और मुझे इसी स्कुल में एक टीचर भी नजर आ रही हैं जो इन बच्चों को--

इन कुर्सियों पे कुछ लोग बैठे हैं जो चाय और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं।

अनेक प्रकार के प्रोडक्ट रखे हुए है जैसे पानी की पाइप वगैरा --

अ अलग प्रकार के रस्सियों से व लकड़ी से इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए हैं तथा इसके अंदर मुझे हरे कलर की --

जिस शोरूम में बोहोत से स्टोन के प्रोडक्ट रखे हुए हैं।

कोई बड़े पेट्रोल पंप के पास बने हुए किसी गार्डन का है।

रखी हुई है तथा उनमें मेज के चारों तरफ लकड़ी की बनी हुई सुंदर कुर्सियां रखी हुई है।

किसी योगा क्लास का लग रहा है जहां कुछ छात्र व छात्राएं अपनी मैट बिछा कर --

तथा नीचे कुछ गोल गोल छोटी छोटी लाइटें लगी हुई है।

प्रस्तुत हैं दिया गया चित्र किसी खेल मैदान का लग रहा है।